यहाँ पर हमें एक रोड दिखाई दे रही है जिस पर हमें कुछ ऑटो और कुछ मैजिक दिखाई दे रहे है मैजिक में बैठे हुआ--

यहाँ पर नीचे कुछ सुखी मिट्टिया पड़ी हुई है और कुछ जगहों पर घाँस उगी हुई है यहाँ पर काफी पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है और धुप की रौशनी पड़ रहे है।

झाड़िया दिखाई दे रही है और यहाँ पर कुछ चलते हुए लोग भी दिखाई दे रहे है।

इस साइड पे हमें कुछ साइकिल पार्क की हुई दिखाई दे रही है और गाड़ी से कुछ व्यक्ति जाते हुए दिखाई दे रहे है काफी सारी मिट्टिया भी दिख रही है।

और एक मंदिरों की ऊपर गुंबद पर कुछ मूर्तिस बनी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें बड़ा-सा मैदान जैसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमें कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे है बेंचेस पर--

नीचे कई सारे शॉप्स भी हमें दिखाई दे रही है और हमें यहाँ कई सारे स्टार् भी दिखाई नीचे दे रहे है और काफी सारी लाइट्स जल रही है।

पड़े हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ कार्टून्स भी नीचे पड़े हुए दिखाई दे रहे है।